यहाँ इस इस रोड पे बहुत सारी बसें और ऑटो चल रहें हैं इसके पडोस की दुकान फूलों से सजी हुई है।

बहोत घास है और यहाँ पे हरियाली भी बहोत अच्छी है यहाँ पे पानी भरा हुआ है इसमें एक बगुला घूम रहा है जो काले रंग का है यहाँ पे पेड़-पौधे भी बहोत है।

यह एक साइकिल है जो बहुत ही अच्छी है ये काले रंग की है इसके ऊपर की टोपी नहीं है यहाँ पे एक बाल्टी रखी है जो सफेद रंग की है इसका दरवाजा भूरे रंग का है।

जहाँ पे बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं एक तराज़ू रखा है यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और लाइटें भी जल लई हैं।